इमेज में एक घर दिखाया जा रहा है अ-अ घर-घर ईट का है पक्का है ऊपर टीन शेड है।

इमेज में एक मस्जिद या दरगाह शो हो रही है।

ऊपर गुंबद है और घर में भी खिड़कियां लगी हुई है जिसमें लोहे के सरिया है।

सामने भी एक पिलर की सहायता से एक शीट बनाई गई है राउंड शेप में जिसमें एक बुजुर्ग आदमी और अ बच्चे बैठे हुए है सामान रखा हुआ है लोगों का और ट्रेन भी दिख रही है।